पांच-छह बोट्स भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां तीन-चार पेड़ भी लगे हुए दिख रहे हैं।

और सन राइज होते हुए दिख रहा है।

काफी लोग बैठे नज़र आ रहे हैं।

जिनकी ड्रेस के कलर हैं रेड और येलो प्लस ग्रीन ।

उस पर सम्मेलन लिखा हुआ है।

एक मल्टी दिखाई दे रही है।

फंक्शन के गेट की डेकोरेशन --

यहाँ सोफे रखे हुए हैं।

यहाँ दो बड़े वाइट कलर के पत्थर हैं।

और चार-पाँच लोग भी हैं।

एक वॉटर कूलर रखा हुआ है।

बिल्डिंग के बाहर दो पेड़ लगे हुए हैं।

एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

एक ऑनलाइन शॉप दिख रही है।